और काफी सारे घर बने हुए है वहां पर दुकान टाइप से शटर लगी हुई है उनमे।

सटर लगी हुई है जो मंदिर है और वो मंदिर ऑरेंज पिंक कलोर से है मार्बल का है ।

एक सैलून है सैलून में एक लड़का बैठा हुआ है।